इस्टेट बैंक है पोस्टर लगा है।

और चिड़िया हैं फूल हैं मटका पेड़-पौधे हैं।

सफेद हैंऔर ऊपर मे एक छत टाइप बना हैं और इधर बहोत झने आदमी है बोरी है।

और ऊपर मे सीट छाया हुआ है नीचे का ऐसी है और टावर खंभा-खंभा है।

इस साइड खिड़की भी है ताला है शटर है जिसक जिसमे बंद करने वाला है।